यहां सामने बहोत सारी बिल्डिंगे है जिसका कलर पिंक ब्लू व्हाइट येलो है।

सामने एक ऑटो दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड है।

यहां शीशा लगा हुआ है शीशे के अगल बगल रेड कलर की हुई है।

यहां सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके शर्ट का कलर व्हाइट है।

यहां एक आदमी खड़ा है जिसके कपड़े का रंग ब्लैक है।

खिड़कियां दिखाई दे रही है।

बाइक का कलर ब्लू है और उसके ऊपर तीन आदमी बैठे हुए हैं।

सामने एक लड़की छाता लिए हुए जा रही है।

ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है नीचे एक कार खड़ी है कार का रंग सिल्वर है।

यहां कुछ स्केटबोर्ड रखे हुए हैं।

ऊपर कुछ लाइट जल रही है जिसका कलर सफेद है।

यह कोई बड़ा सा नदी या समंदर का दृश्य है।

एक बच्चे के कलर का टी शर्ट है कलर रेड में है और सभी कोई जूते पहने हुए हैं जूते का कलर व्हाइट और ब्लैक में है।

यहां कुछ आदमी लोग छाता लेके खड़े हैं।

यहां दो बड़े बड़े पत्थर के बीच में एक लड़का और एक लड़की है।

यहां कुछ सेब रखे हुए हैं जिसका रंग लाल है।

यह कोई बड़ा सा बिल्डिंग का दृश्य है और ऊपर कुछ बंबू लगे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा बैलून दिखाई दे रहा है जिसका रंग येलो है।

यहां सामने एक टेबल रखा हुआ है जिसका रंग ब्लैक है और उसके साइड का कलर येलो है।

आदमी का शर्ट का कलर ब्लैक है।

सामने दीवार में एक टी_वी भी लगा हुआ है।

दीवार का रंग सफेद है।

यह एक जिम के अंदर का दृश्य है।

यहां अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका रंग हरा भरा है।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग हरा भरा है।

पीछे अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है।

यह किसी रेस्टोरेंट के अन्दर या फिर पार्टी या फंक्शन का दृश्य है।